कोई हाथ से गिटार तो कोई ढोल लिया हुआ है।

ये रोड कचिया सा लग रहा है और इसपे कुछ लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

एक चेक नाका भी नजर आ रहा है।

इसके नीचे के जमीन में टाइल्स लगी है।

जहां पे जिम करने की मशीनें रखी हुई है।

कुछ डब्बे भी नजर आ रहे हैं।

एक लाइट भी लगी हुई है और पर्दे भी लटके हुए नजर आ रहे हैं।

टेबल पे रेड कलर की गुलदस्ते भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

उधर टी_वी के ऊपर सोनी सोनी लिखा हुआ है और कुछ टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पे पोस्टर लगा है उस पे में बैक छपी हुई है।

पेड़ के पास दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये दृश्य में बहुत सारी बिल्डिंगे नजर आ रही है जो की वाइट कलर की है।

बेड पे व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई है।

सामने की दीवार पे एक टी_वी भी लगी हुई नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में कुछ आदमी दिखाई दे रही है।

जो वाइट कलर के कपड़े पहन करके खड़े हैं।

एक वाइट है और दीवार पे एक छोटा सा गुलदस्ता भी लगा हुआ--